ऊपर हम लोगों को नीले कलर का आसमान दिखाई दे रहा है। एह देखने में हमें बहोत अच्छा लग रहा है।

इस इमेज में हम लोगों को एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें अ पठान छपा हुआ है ए और उसमें लगी हुई है।

बाहर खड़े हुए हैं और कुछ लोग अंदर दिखाई दे रहें हैं। देखने में बहोत अच्छा मन्दिर दिखाई दे रहा है। ऊपर नीले कलर का आसमान दिखाई दे रहा है।

भर रहा है जो नीली टी-शर्ट पहने हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम लोगों को --

खम्बा लगा हुआ है इसमें लाइटटें लगी हुई हैं। एक टैंपाल दिखाई दे रहा है जो तीनों के साइड से बना हुआ है। एक हेच.एफ. डीलक्स गाड़ी दिखाई दे रही लाल कलर की इसमें टी.वी.एस. स्टार गाड़ी दिखाई दे रही है।

येलो कलर की वे बिल्डिंग्स पेंट की गई दीवाल दिखाई दे रही है। यहाँ पे लकड़ी रखी हुई है। यहाँ पर उल्लू जैसे बने हुए --

यहाँ पर बोहोत सारे लोग खड़े हुए हैं। एक कैमरामैंन भी खड़ा हुआ है। यहाँ पे बोहोत सारे टेम्पू खड़े हुए हैं पीले कलर के।

बोहोत सारे कुर्सी रखी हुई हैं सोफा सेट रखे हुए हैं। फुग्गे से सजा हुआ है और उन लोगों को स्टेज पर बोहोत सारे फूलों से सजी हुई है।

ऊपर नीले कलर का आसमान दिखाई दे रहा है बगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये दिखने में बहुत अच्छा लग रह है।

इस इमेज में हम लोगों को एक मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है। इसमें बोहोत सारे भगवान की मूर्ति रखी हुई है जिसमें फूलों की माला से सजे हुए भगवान एक --

ये समझ लो हम लोगों को बदक दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की और हर तरफ़ा बदख रखी हुई है।